इस फोटो में मुझे एक स्विपिंग पूल दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे एक दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में मुझे कुछ लोहे के गेट दिखाई दे--

इस फोटो में मुझे कुछ कुर्सियां दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो में कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं।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

मुझे इस फोटो में एक पहाड़ दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में एक बड़ा टेबिल दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में एक बड़ा ड्रम दिखाई दे रहा हैं।

मुझे इस फोटो में एक बड़ा हॉल दिखाइ दे रहा हैं।

मुझे इस फोटो में बड़े बड़े कुर्सियां दिखाई दे रही हैं।

मुझे इस फोटो में बहोत सारी कुर्सियां दिखाई दे रही हैं।

मुझे इस फोटो में बहोत सारे गाड़ी के टायर दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो में एक बड़ा टेबिल दिखाई दे रहा है।